एक बहुत बड़ा मंदिर है गणेश जी का उसमे मूर्ति रखा हुवा है।

पुल है और ऊपर आसमान है और बहुत सारा बिल्डिंग है।

पानी है जंगल लग रहा है और सूखी-सूखी डाली है।

टोयोटा का एक कार है और उसका नंबर है यू_पी सिक्स फाइव बी_बी सेवन थ्री नाइन थ्री --

-- और पीछे एगो घर है ।

शहर है और गाड़ियां है बाटा का शोरूम है।

और एक दो तीन चार पांच-पांच है।

खाना रखा हुआ है चावल है और जग है चटनी है।

ठीक है पीछे चट्टान है आसमान है।

एक बिल्डिंग है बिल्डिंग के बाहरी हिस्से बाहरी हिस्से है और खिड़की है।

और सब घूम रहे हैं इधर-उधर कर रहे हैं हम गाछी है पेड़- पौधे हैं ।

और कुर्सी रखा हुआ है ईट रखा हुआ है।

बहुत बड़ा एक कछुआ है बहुत पुराना कछुआ है कछुआ घास के ऊपर है और उसके पीछे एक --

सुंदर-सुंदर दो केक है एक केक में एक बहुत अच्छा केक लग रहा है।

सूरज ढलता हुआ दिखाई दे रहा है और सूरज के नीचे सपेर पौधे है बहुत बड़ा नदी हैं नदी है और एक जहाज़ मतलब पानी का जहाज़ भी हैं।

एक देसी दो बहुत सारे देसी मुर्गी है ।

मुर्गे मुर्गिया भी है उसकी पूंछ बहुत लम्बी है मुर्गी के सर के ऊपर लाल वाला कुछ है और गमले में पौधा है।